अ सूचना लोगों को मिल रही हैं। लोग बोहोत सारे यहां पे चल फिर के वो उसको देख रहे हैं।

और छोटे से पेड़ उगे हुए हैं और इन लोगों बॉ बॉक्स ( टाइप की इसमें पत्थर लगाए गए है और सुंदर-सा पातवे बनाये हैं।

आ जैसे कि देख सकती हूं यह एक जनरल स्टोर है जिसका नाम दिल्ली जनरल स्टोर रखा गया है जून मंडी।

और जो ब्रशेस हैं वो लगाए गए हुए हैं इसके बगल में लाल रंग का डोर है और इसमें अ-वाईट --

जैसे कि देख सकती हैं ये एक कपड़ों की दुकान है। यहाँ पे रात में ढेर सारे रंग बिरंगे कपड़े --

जमाए गए हैं और यहां पर हैंगर में भी कपड़े लगे हुए हैं और यहां पे ग्लास का टेबल बनाया गया है। जिस --